जिसके लिए यहाँ पर बोहोत सारा--

यहाँ पर एक अ म बिल्डिंग का काम चल रहा है। एक मकान बन रहा है।

और जिसकी बहार बहुत सारे पॉउचेस है कुरकुरे के पॉउचेस चिप्स के पॉउचेस टंगे हुए है।

एक लाइट लैंप लगा हुआ। बड़ा ऊंचा अ खम्बा लगा हुआ है।

वहाँ नदी के किनारे पे भोलेनाथ और भोलेनाथ की पिंडी रखी हुई हैं ।

और जिसमे बोहो एक मिरर लगा हुआ है जोकि ओ जिसकी चारो साइड मिरर की चारो साइड लाइट वगेरा--